और सामने ही तीन रंग का चबुतरा भी बना हुआ है और पास ही में कुछ ईटे भी रखे हुएं हैं।

सामने एक झाड़ी दिखाई दे रही है जहाँ पर कुछ पत्थर भी पड़े हुए है और आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे है।

बहार एक रेड कलर की खुर्सी रखी हुई है और अंदर की तरफ कुछ बोरे भी रखे हुए है।

जो कि आयकर भवन का पोस्ट है और दो कम खभे लगे हुए हैं और पास ही में दो पेड़ भी लगे हैं।

नीचे के आदमी बैठ हुआ है आस-पास की सारे मकान दिखाई दे रहे है और कुछ पैड पौधे भी लगे हुए है।

सामने एक सफ़ेद कलर की कार खड़ी है जिसे रिपेरिंग के लिए एक आदमी मना रहा है और कार के ऊपर अपने साथ एक कपड़ा भी रखा हुआ है और एक आदमी भी शायद पीछे की और खड़ा है जिसका हाँथ दिखाई दे रहा है।

सामने एक बहोत बड़ा स्वीमिंग पुल दिखाई दे रहा है जिसके चारो और कई सारे झूले बने हुए है और कुछ लोग झूलो मे झूल रहे है और आस-पास कुछ घर भी दिखाई दे रहे है और पेड़-पौधे भी लगे हुए है।